लोग भी बोहोत सुंदर है लोग मास्क लगाय हैं परिवार कल्या संस्था पटना पर खये हैं। बहुत ही --

यह एक चित्र है यहाँ पर कई औरतें बैठीं हैं यहाँ पर नदी है यहाँ पर बहुत ही अच्छा माहौल है बहुत ही सुन्दर है।

बहुत ही अच्छा है यहाँ पर कई औरतें बैठीं हैं सूप आलें हैं बहुत ही अच्छी हैं यहाँ पर पूजा करती हैं औरतें बहुत ही सुन्दर है।